नाच रहें हैं यहाँ पे गाना सुन के।

ये एक-एक सैलून है। यह सैलून में --

यह दुकान में साबुन शैम्पु तरह तरह के सामान है ।

पौधे लगे हुए हैं। ये काफी --

लगी हुई है बहोत सारे बच्चे --